जो की बहुत ही अच्छी दिख रही है बस के ऊपर पीला पट्टल दिख रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने मिटी दिख रही है जो कि कांच कांच की दिख रही है जो कि बहुत ही सुंदर मल्टी दिख रही है नीले नीले कांच दिख रहे हैं पास में पेड़ दिख रहा है जो कि हरा भरा दिख रहा है।

नीचे हमको दुकानें दिख रही हैं जो कि बहुत सारी दिख रही हैं पीछे हम को खुला आसमान दिख रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है पेड़ों के हम पर पेड़ दिख रहे हैं जो कि हरे हरे दिख रहे हैं लकड़ी दिख रही है जो कि लकड़ी कलर की लग रही है पेड़ जो पेड़ कलर के लग रहे हैं।

यहा पे हम देख सकते है सामने हम को बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है हम देख सकते है सामने हमे कुछ चार्जिंग वाला रिक्शा दिख रहा नहीं दिख रहा हम को पीछे बहुत सारे चीता दिख रहे है जानवर दिख रहे है।

गार्डन बना हुआ दिख रहा है स्कूल का जो कि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर गार्डन दिख रहा है नीचे हल्की हल्की घास दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने एक मल्टी दिख रही है मल्टी हमको हरे कलर की दिख रही है बहुत ही सुंदर मल्टी दिख रही है ये पुराने मल्टी जैसे मल्टी दिख रही है जो की बहुत की बहुत ही अच्छी दिख रही है बहुत ही बढ़िया लग रही है।

जेसा के हम देख सकते है सामने हम को सामने मल्टी दिख रही जो की बहुत ही अच्छी लग रही मल्टी का कलर हम को ब्राउन और लाल दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है सं--

उसके ऊपर लिखा है जे.जे.टी. लिखा हुआ दिख रहा है ये इसका नाम लग रहा है इसपे लाइटिंग भी लगी हुई है जो कि गोल्डन कलर की लाइट लग रही है जो कि बहोत ही सुंदर दिख रही है ऊपर आसमान दिख रहा हैजो अंधेरा --

पीछे हमको जाली रखी हुई दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी लग रही है हल्के हल्के पत्थर पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ऊपर खुला आसमान दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है जालियाँ दिख रही हैं जो कि लोहे की दिख रही है।

लाइट के खंबे दिख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि ब्लैक एण्ड व्हाइट दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर --

जेसा की हम देख सकते है के सामने हम को बड़ा खुला आसमान दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है आसमान को नीला और सफेद दिख रहा है वो भी बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा है।